एक के चेहरे पे मास्क लगा हुआ है और हाथ में पर्स है जो कि लड़की है।

चेहरे पर ब्लर है और एक चौथा इंसान आगे बढ़ रहा है।

और कई सारे चट्टानें भी दिखाई दे रहे हैं।

और स्टील की रेलिंग लगी हुई है दिखाई दे रहा है और कुछ--

तस्वीर में मुझे कपड़े की शॉप दिखाई दे रही है।

भगवान जी के चरणों के पास एक मोर भी है।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

यह इस तस्वीर में मुझे एक बहुत बड़ा जंगल दिखाई दे रहा है।

पर आय जात निवास प्रमाण पत्र भी बनाए जाते हैं।

एक भैंस भी दिखाई दे रहा है भैंस का बच्चा भी और कुछ पत्थरे भी--

जहां पे कई घुमावदारे वाले स्लीपिंग है।

यहां पे बहुत सारी मछलियां भी हैं।

और नीले पीले कैरेट में रखी हुई हैं मछलियां।

और एक टेबल रखा है जिस पर कुछ मशीन भी रखी हुई है।

और एक सोफे पे बैठा इंसान भी दिखाई दे रहा है जिसके मुंह पे ब्लर है।

और बहोत दूर दूर पर पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं और एक पहाड़ भी।

एक काली प्लेट में दो बर्गर शायद दिख रहे है।

और कई सरिया कई सारी गाड़ियां भी खड़ी हुई है।